बगल में एक कुर्सी है।

और बहुत से खड़े हैं।

सामने में बहुत सारे फूल भी लगे हुए हैं।

फंक्शन के आगे में एक गेट है।

बगल में एक दुकान है।

सब लेडीज सब बच्चे को डांस सिखा रहे हैं।

जंगल में बहुत सारे आदमी जा रहे हैं।

बेड में बिछाया हुआ है।

सामने में बहुत सारे आदमी हैं।

पेड़ में हरे पत्ते हैं।

यह आटा का मिल है।

झरने से बहोत सारे पानी आ रहे हैं।

शॉप बहुत बड़ा है।

आदमी गाड़ी को धो रहा है ।

घर व्हाइट कलर का है।

लाब में बहुत सारी पानी है।

सामने में बहुत सारे पेड़ है।

सब फूल बहुत रंग के हैं।

सामने में एक पुलिस है।

यह एक होटल है।

होटल के आगे में एक बोर्ड है।

होटल महाराजा नाम से एक बोर्ड भी लगाया हुआ है।

बगल में ही बहुत सारे पेड़ भी हैं।